जावा में रिलेशनल आपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे बूलियन दाता typeबूलियन डेटा टाइप रिलेशनल आपरेटर्स और रिलेशनल आपरेटर्स का प्रयोग करके दाता की तुलना कैसे करते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल का अध्ययन करने के लिए आपको जावा में डेटा टाइप का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाइट पर जाएँ
रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं
उनका आउटपुट बूलियन डेटा टाइप का एक वैरिएबल है एक बूलियन डेटा टाइप का आकार 1 बिट होता है
इसमें केवल दो वैल्यू स्टोर होती हैं
ट्रूया फॉल्स
जब कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू प्राप्त होता है
यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आउटपुट फॉल्स होता है
यहाँ उपलब्ध रिलेशनल ऑपरेटर्स की एक सूची दी गई है
ग्रेटर दैन से अधिक लैस दैन से कम 000113 000013 इक्वल टू के बराबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू से बड़ा या बराबर लैस दैन और इक्वल टू से कम या बराबर नॉट इक्वल टू के बराबर नहीं हम उन सभी का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे
इक्लिप्स पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
मैंने बूलेएंडेमो नामक एक क्लास बनाया है और इसे मेन मेथड में शामिल कर दिया है
अब कुछ एक्सप्रेशंस व्यंजक जोड़ते हैं
टाइप करें बूलियन ब कीवर्ड बूलियन वैरिएबल ब के डेटा टाइप को बूलियन के रूप में घोषित करता है
हम ब में हमारी कंडीशन के परिणाम को स्टोर करेंगे
हम एक वैरिएबल वेट परिभाषित करेंगे और उस वैरिएबल का प्रयोग करने के लिए एक कंडीशन की जांच करेंगे
इंट वेट इक्वल टो 45 हम जांच करेंगे कि वेट की वैल्यू 40 से अधिक है या नहीं
ब इक्वल टो वेट ग्रेटर थान 40 यह कथन कहता है कि जांच करें कि वैरिएबल की वैल्यू 40 से अधिक है या नहीं और परिणाम को ब में स्टोर करते हैं
अब ब की वैल्यू को प्रिंट करते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू प्राप्त होता है
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि वैल्यू 40 से कम होती है
वेट को बदलकर 30 करें
सेव और रन करें हम देख सकते हैं कि आउटपुट में आशानुरूप फॉल्स प्राप्त होता है
इस प्रकार ग्रेटर दैन चिन्ह का उपयोग यह जांच करने के लिए किया जाता है कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं
उसी प्रकार लैस दैन चिन्ह का उपयोग यह जांच करने के लिए किया जाता है कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है या नहीं
ग्रेटर दैन चिन्ह को लैस दैन चिन्ह से बदलते हैं
अतः हम जांच कर रहे हैं कि वेट 40 से कम है
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट आशानुरूप ट्रू प्राप्त होता है
वेट की वैल्यू को बदलकर 45 करते हैं और आउटपुट को देखते हैं
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि हमें फॉल्स प्राप्त होता है क्योंकि कंडीशन वेट 40 से कम ट्रू नहीं है
अब देखते हैं कि कैसे जांच करते हैं कि एक वैल्यू दूसरे के बराबर है या नहीं
ऐसा करने के लिए हम दो इक्वल टू चिन्हों का प्रयोग करते हैं
लैस दैन चिन्ह को डबल इक्वल टू से बदलें
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है
अब वेट को बदलकर 40 करते हैं और आउटपुट देखते हैं
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट ट्रू है
इस प्रकार डबल इक्वल का प्रयोग समानता की जांच करने के लिए किया जाता है
कृपया सावधान रहें क्योंकि प्रायः लोग समानता की जांच करने के लिए सिंगल इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं
और यह अनावश्यक गलतियां पैदा करता है
इसके बाद हम देखेंगे कि लैस दैन और इक्वल टू के लिए कैसे जांच करेंगे
ऐसा करने के लिए हम एक लैस दैन चिन्ह के बाद एक इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करेंगे
डबल इक्वल टू को लैस दैन इक्वल टू से बदलें
सेव और रन करें
अपेक्षा के अनुरूप आउटपुट ट्रू है
अब यदि लैस दैन चेक क्रियान्वित होता है
तो यह देखने के लिए वेट की वैल्यू को बदलें
40 को बदलकर 30 करें
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि हालांकि वेट 40 के बराबर नहीं है फिर भी हमें आउटपुट में फॉल्स प्राप्त होता है क्योंकि यह 40 से कम है
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि वेट की वैल्यू 40 से अधिक हो
वेट का मान 50 मान लेते हैं
सेव करें और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है
और यह भी 40 से कम नहीं है
इसी प्रकार हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू की जांच करने के लिए हम एक ग्रेटर दैन चिन्ह के बाद एक इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं
इसका अभ्यास करते हैं
लैस दैन इक्वल टू को ग्रेटर दैन इक्वल टू से बदलें
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू है क्योंकि वेट 40 से अधिक है
वेट को बदलकर 40 से कम की वैल्यू लें
वेट की वैल्यू को बदलकर 40 से कम करते हैं
30 मान लेते हैं
सेव और रन करें
हमें फॉल्स प्राप्त होता है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 से अधिक नहीं है और 40 के बराबर भी नहीं है
फिर हम देखेंगे कि नॉट इक्वल टू के लिए जांच कैसे करेंगे
या एक एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद एक इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करके किया जाता है
ग्रेटर दैन को एक्सक्लेमेशन मार्क से बदलें
अतः यह कथन जांच करता है कि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है और परिणाम को ब में स्टोर किया जाता है
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट ट्रू है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है
वेट को बदलकर 40 करते हैं और आउटपुट देखते हैं
30 को बदलकर 40 करते हैं
सेव और रन करें
हमें फॉल्स प्राप्त होता है क्योंकि वेट के 40 के बराबर न होने की कंडीशन फॉल्स है
नॉट इक्वल टू कंडीशन को इक्वल टू कंडीशन के विलोम के रूप में माना जा सकता है
ऐसा इसलिए होता है कि हम जावा में डेटा की तुलना करने के लिए विभिन्न रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बूलियन डेटा टाइप के बारे में रिलेशनल ऑपरेटर्स और दो मानों की तुलना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग कैसे करें
इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य के रूप में पता लगाएं कि दिखाए गए दो व्यंजक बराबर हैं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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
धन्यवाद